कुछ बड़े बड़े गंजी में कुछ मैटीरियल डाल कर उस में कुछ मिक्स पाउडर डाल रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़े सा पेट्रोल पंप हैं जो कि रोड के किनारे में है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा बस है जिसके सामने एक बहोत बड़ा आदमी खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक और बस दिखाई दे रही हैं।

झंडी लगी हुई है मंदिर के ऊपर रेड कलर की पीछे में बड़ी सी खंभे में लाइट जल रही है।

अह दुला दुलीन बैठे हुए हैं और इन चियरो में पूरी पब्लिक बैठी हुई हैं।

इस चित्र में एक बड़ी सी रेस्टोरेंट है जिसमें बहोत सारी--

और गुलदस्ते भी रखे गए हैं राइट साइड में--

इस क्षेत्र में गौशाला है जिसमें दो भैंस लोग है और एक शीट बनी हुई है और --

पीछे कांच की गेट बने हुए हैं और पंडाल लगा हुआ है गुलदस्ते लगे हुए हैं।

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

और नीचे मेज बिछी हुई है।

इसमें पूरी कॉपी के सामान रखे गए हैं चॉकलेट डब्बा--

कुछ काम कर रही है बगीचों में पौधे लगा रही है और बहोत सारे कपड़े तार में टंगी हुई है।